और एक आदमी दो तीन आदमी घूम रहे हैं।

और काले रंग की कुर्सी दिख रही है।

ये एक गाडी खड़ी है और ये फैक्ट्री सी लग रही है।

यहां एक दो दुकानें दिखाई दे रही है।

और गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

नीले रंग की तस्वीर हैं।

ये कोई फल की दुकान दिखाई दे रही है और एक आदमी दुकान में खड़ा है।

ये सेब संतरे और अंगूर चीकू केला--

यहां पे बहोत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं।

यहां पे आदमी खड़े हैं।

यहां पे संतरी सी पट्टी लग री है लाल लाल और ये फैक्ट्री नजर आ रही है।

ये पार्किंग नजर आ रही है।

और निचे काले काले रंग के पत्थर से रख रखे हैं।